दिखाई बहुत सारी घंटी लगी हुई दिखाई दे रही यहाँ पर हाथी बना हुआ दिखाई दे रहा है उसकी सूंढ़ दिखाई दे रही उसके लंबे-लंबे दांत दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे है सबके हाथ में धनुष बाण--